बादल चमचमा रहे हैं और बहुत सारे घर है जिनपे पानी की टंकी वगैरा रखी हुई हैं और बहुत अच्छा गांव है।

यह बहुत बड़ा कैफ़े हैं जिसके अंदर दो तीन मेज है।

यह एक शॉप है जिसके आगे लिखा हुआ है और ऊपर बहुत सारे शीशा में--

टी शर्ट टंगी हुई है और नीचे एक नीले कलर गाड़ी है और बहुत से --

टी_वी किट ऑल टाइम रिमोट एल_ई_डी फ्रिज मिलती है शॉप नंबर एक सो अड़सठ है।

पोस्ट ऑफिस का कमरा बहुत अच्छा है और बहुत बड़ा है उसके बाद एक चौकी लगी है जिसके पास एक जंगला है उसमें सरिए लगे है।

जो कि बहुत हरियाली जायका है और यह बहुत बड़ी बिल्डिंग है यह पुरानी बिल्डिंग है यह पत्थरों से बनी हुई उसके ऊपर एक आसमान भी है खु --

ये ऊपर तारें भी निकाली हुई है और आस पास में--

छे व्हाइट कलर की गाड़ी और एक ब्लैक कलर की गाड़ी खड़ी है बाहर और आसमान खुला है आसपास में टॉवर और बहोत सारी बिल्डिंगें भी है और शॉप भी हैं।

और वह बहुत मोटा आदमी है उसकी शर्ट लाल है और पैंट ब्लैक है और उसने पैरों में चप्पल पहन डाली हुई है।

इसके बीच में वय ग्रीन पेंट बिछाया हुआ है और आगे एक सड़क निकल रही है। ऊपर से--

और टैक्सी के अंदर सवारी बैठी है जो कभी कहीं जूनागढ़ जाएगी कहीं चौपाटी जाएगी कहीं कहीं जाएगी।

और कार में अंदर बहुत अच्छी फैमिली बैठी हैं जो की बहुत शानी आधी --

और इसके अंदर एक वाटर कूलर है जिसके अंदर बोतल है एक सैनिटाइजर पड़ा है और बहुत सारे मोबाइल पड़े बीच में एक टेबल है आस-पास में कुर्सी पड़ी है ब्लैक रंग की।

जो कि लोगों को बता रहा है अभी यह आइडिया की सिम है यह बहुत अच्छी है और इधर एक लैपटॉप और पड़ा है जैसे कंप्यूटर --

सामने वृक्ष है जो की हरे है और उनकी हरियाली भी झलक रही है और इसके बीच मे --